यहां पर बहोत सारा समान दिखाई दे रहा है।

और इसके पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और नीले रंग का आ--

टेबल के ऊपर गुलाबी रंग के कपड़ा बिछाया हुआ है और कितने सुंदर--

बड़ा टेबल दिखाई दे रहा है सामने सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है।